और लोग बहुत सारे आबादी में फैले हुए हैं और साइकिल --

माना जाता है कि यह कोहरा वाला इलाका और नीचे की तरफ खाई है।

और बोटिंग के लिए बहुत अच्छा जगह माना जाता है |

यह एक मार्केट है जहां पर हर एक प्रकार का सब्जी मिलता है।

यहाँ एक पुलिया जैसा दिखाई दे रहा है और --

और बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है झूमर --

आशीर्वाद ले रहे हैं और मैम हम लोग भी है।

अरे भाई-बहन लोग लड़की -लड़का लोग घूमने के लिए आते है और मेला का --

आनंद उठाते हैं और--